देखिये एक बिल्डिंग है बिल्डिंग काफी बड़ी दिखाई दे रही है और इसके वगल में आप देखिए की पेड़ भी लगा हुआ है और कुछ पानी जैसा भी है आप देख सकते --

आप देख सकते है कि पूरा आपको घर ऐसा लाल दिखाई दे रहा है सामने आपको कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है पेड़ जो है वो हरे पेड़ है और पेड़ में देख सकते है छोटे-बड़े सब पेड़ है और --

ऊपर आप देखिये की एक नीले कलर का एक और बोल्ड लगा हुआ है।

बना हुआ है बहुत बड़ा पीछे से एक पेड़ भी देख सकता हो पेड़ के अलावा जो आप देखिये कितना अच्छा है इसमें आपको दिखेंगा जैसे की वो बैठा हुआ है और ये भी दिखे --